बहोत सारी चेयर है चेयरस् का कलर ब्राउन है बैलूनस लगे हुए बलूंस का कलर ग्रीन ऑरेंज और रेड है और ग्रीन है और व्हाइट है।

इस फोटो मे मुझे बहोत सारे पत्थर दिखाई दे रहे है पत्थर का कलर येलो है बहोत सारे घर दिखाई दे रहे --

और जहां पे कांच लगे हुए हैं कांच का कलर ब्लू है और विंडो से लाइट से भी बहोत सारी बहोत बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं।

और एक पैनल रखा हुआ है और पीछे बुक्स रखी हुई है एक फ्रिज है जिस पे अमूल लिखा हुआ है एक आदमी बैठा है।

इस फोटो में मुझे एक मार्केट दिखाई दे रहा है जहां पे रोड पे बहोत सारे लोग खड़े हैं नीचे सब्जियों की सब्जी मंडी लगी हुई है ठेले हैं।

और जग रखे हुएं है और नमक के रखा हुआ है।

और पीछे बहोत सारे लोग बैठे हैं ऑरेंज कलर के फूल उगे हुए हैं और बहोत सारी चेयर्स लगी हुई है जहां पे बहोत सारे लोग--

और बहोत सारे शरीफे लगे हुए हैं नॉनवेज एक ही डिब्बा रखा है और कढ़ाई पे तवे पे कुछ लगा हुआ है।

कुछ खंभे लगे हुए जो की लाइट्स के हैं और वाइट कलर की पुताई हो रखी है और सीढ़ियां बनी हुई है और बहुत सारी चेयर बनी हुई है।

इस फोटो में मुझे एक सब्जी मंडी की दुकान दिखाई दे रही है जहां पे बहोत सारे फ्रूट्स सब्जियां है वेजिटेबल्स हैं।

कांच के गेट भी बाहर एक मशीन लगी हुई है और दुकान है दुकान के बाहर बहोत सारे कैरेटस रखे हुए हैं।

विंडो का कलर ब्लैक है कांच की है और बाहर कुछ उसके नीचे कुछ दुकाने है दुकानों का कलर रेड है फ्रेम लगा हुआ है बा --

इस फोटो में मुझे एक बुलेट बाइक दिखाई दे री है बुलेट बाइक बिल्कुल ठीक ह और इसकी प्लेट लगी हुई है वाइट कलर की।

में बहोत सारी औरतें लड़कियां है और औरत ने येलो कलर की ड्रेस पहनी है और इसमें बहोत सारे लड़के बैठे है लड़कों ने बनियान पहन --

इस फोटो मे मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है एक घर दिखाई दे रहा है जिस जगह गेट है येलो कलर का बहोत सारे पेड़ पौधे है।

चेयर और टेबिल लगी हुई है और एक बोर्ड लगा हुआ है और दो आदमी खड़े हैं और पेड़ पौधे हैं और गमले लगे हुए है।